बॉटल भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग चारो और से बेठे हुए है।

अच्छा लग रहा है जिसमें कि पूल में पानी भरा हुआ दिख रहा है और इसमें ये इस